यहाँ पर लोग बाइक में हेलमेट नहीं यूज़ करता। ए बहुत ही खतिकारक है।

इस चर्च में एक फंक्शन हो रहा है।

ए हमारे इलाका का एक रेस्टोरेंट है।

बहुत जल्दी ये बिल्डिंग कम्पलीट हो जाएगा।

इस दुकान में घर सजाने का सामान मिलता है।

इलाका का लोग इस दुकान से सामान खरीदता है।

इस स्कूल में पाँच सौ स्टूडेंट है। स्टूडेंट के साथ-साथ गार्जियन भी यहाँ पर है।

इस दुकान के अंदर अलग-अलग कमरे के अलग-अलग डिप्रेम डिपार्ट्मेंट भी है।

यहाँ पर लोग नाव से नदी को घूमता है।